बस के ऊपर उत्तर प्रदेश परिवहन लिखा हुआ है।

फर्श पर पीली रेखा बनी दिखाई दे रही है।

सामने खिड़कियों पर कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे दीवार पर टीवी और दो ए_सी दिखाई दे रही हैं।

सामने की ओर आसपास कुछ क्रेन दिखाई दे रही हैं।

जिसका नाम सदर अस्पताल गोपालगंज --

अस्पताल के बाहर कई बाइक व कार खड़ी दिखाई दे रही है।